हंडील हई अच्छा लगै छै।

जीन्स पहेनले हय टी-शर्ट पहेनले हय।

आदमी सब खड़ा होईल हेय अच्छा लगे छै।

सब जगह आय छाई इ आदमी सब ओइमे बइठल हअई।

रैक में धाइल हई नीमन लगे छै आदमी-उदमी --

थल हय गुफा के नीचा खरा होईल है एगो मर्दवा फोटो घिचवावेत --

पैंट पेहनले हई लोहा-उहा ले के कसरत-उसरत कल लय छै।

फोटो घिचवेले हई चार-पांचगो मर्दवा सब खड़ा होईल हई।

अच्छा लगई छे बहुत अच्छा हई उरिल हाई अच्छा लगई छे बहुत हई।